और बगल में टी_वी_एस की भी अ टी_वी_एस बाइक का भी सर्विस लग रहा हुआ है।

इसमें बहोत सारी टेबल और कुर्सियां रखी हुई हैं।

पुराने टाइप का बना हुआ है पर बहोत अच्छा लग रहा है।

जीसका नाम है द पिज्जा शेयरिंग करके--

यहां पे रेस्टोरेंट में है ये एक और प्लेट रखी हैं।

चेयर भी लकड़ी की है टेबल भी लकड़ी की है गेट भी लकड़ी का ही नजर आ रहा है।

इसमें कुछ एडवर्टाइजमेंट का भी कुछ बाहर यंत्र रखा हुआ है।

इसका नाम है अभिन्न दनोदय क्लिनिक डॉक्टर शुभम जैन एम_बी_बी_एस पी_जी_डी_सी_सी ।

एक टेम्पलेट लगा हुआ है जिस पर लिखा हुआ है पतंजलि नमकीन ढ़ाबा।

यह एक रेस्टोरेंट का फोटो है जिसपे एन_एच फोर फोर रेस्टोरेंट लिखा हुआ है।

छवि में दिखाई गई वस्तुएं फूलदान की तरह प्रतीत हो रही हैं।

इस चित्र में एक पेट्रोल पंप की छवि दिखाई गई है।